आइटम्स ये बहुत सजा के है।

नीले रंग में बैग है।

लाइटों से बहुत सजा के है ये जिम ।

एक फायर इंजन मशीन है।

लाइटों से बहुत सजा के है ये होटल ए_सी दिखाई दे रहा है फैन है।

फोटो में आके एक होटल है।

तीन रंग का ड्रेस लगा के है।

टेबल पर आगे एक कंप्यूटर है।

जेरे लोगो अंदर जा रहे हैं।

एक आदमी ठहर के है नीली रंग पॉइंट डाल के है।

एक गेट है वो आगे नीली रंग में है।

टेबल पर आगे बच्चन के यूनिफार्मा दिखाई दे रहा है लाल कलर कुर्सियां है।

ये फोटो में आगे एक जिम दिखाई दे रहाहा है।

ये जिम आके बहुत मशीन्स है उजले कलर में खाली चेयर है।

डोर गोल्ड कलर में है।

हरे रंग में फ्लोर है।

ये फोटो में आगे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

फोटो में हाथ के हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया है।

एक इनविजीलेटर है उसके हाथ में आके पेपर्स है।

एक गणेश का मूर्ति दिखता है।

टेबल पर आके पीला हरे रंग केक है।

नीले रंग में पानी है।

इसके आसपास में हरे रंग के पेड़ हैं।

हरे रंग के पेडस है।

एक अदमिया के हाथ में जाम पकड़ले को है।

बादल आके नीली रंग में दिखाई दे रहा है।

छत आगे हरे रंग से लाइटों से सजा के है।

काले रंग में खाली चेयर्स है।